अ- सफ़ेद कार है जिसको साफ कर रहे हैं।

ये एक धार्मिक इस्थल है जहाँ पे लोग पूजा-पाठ --

की तरह बना हुआ हैं। स्विमिंग पूल बना हुआ है| जहाँ पे लोग एन्जॉय कर रहे हैं।

ये एक स्कूल का ऑडिटोरियम है जहाँ --

शो किये गए लाल कलर में शो किया गया इनको।

इनॉग्रेशन पार्टी की वजह से यहाँ पे पिक्चर क्लिक करवाने एक --

ग्रीनरी एरिया है बादल छाए हुए हैं आसमान में हरे कलर के बहोत सारे पेड़-पौधे हैं और ये केरल का --